पीछे नजर आ रहे है यहां पर लाइट नजर आ रही है कैमरे नजर आ रहे है।

यहां पर एक सरोजिनी मंदिर महावीर मंदिर नजर आ रही है।

कई सारे लोग आ जा रहे हैं दर्शन कर रहे हैं और लाइट लगाए हुए हैं लैम--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

केंत्रिक पूर्णिमा के सुम अवसर पर नगर पंचायत--

लिखा हुआ है ऊपर साइड में यहां पे लोग आ जा रहे हैं यहां पे मेला बैठा हुआ है बाइक साइकिल आ जा रही है।

यहां पे कार दिख रही हैं स्कूटी दिख रही हैं

दिख रहे हैं बच्चों को बैठने के लिए दिख रहे हैं झूले दिख रहे हैं बच्चों के टेबल दिख रहे --

यहां पे एक बहुत सारा महल टाइप एरिया नजर आ--

यहां पे लाइट नजर आ रही है बड़ा सा गेट नजर आ रहा है यहां पर रास्ता नजर आ रहा है पॉट्स रखा हुआ नजर आ रहा है।

खंभे नजर आ रहे है वायरिंग नजर आ रही है यहां पे टाइम नही हैं।